कचहरी को कानूनी भाषा में कहते हैं कलेक्टर कलेक्ट्रेट ।

यहां से आप मनी निकाल सकते हैं पैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक के अकाउंट से।

और यह दुकान में जो डिब्बे रखे हैं इन डिब्बों में देखने से ऐसा लगता है कि यह --